पड़ी है और साथ में ही बहोत सारे फूल इसके ऊपर लगे हुए हैं बहोत सारे फूल --

ये एक बहुत ही बड़े हॉल की तस्वीर है हाल के बाहर कुछ लोग बैठे हैं।

अ गमले के पीछे कुछ लोग खड़े हैं।

जोकि इसे रेड़ी के पीछे बांधा गया है।

उनके सामने कुछ लोगों को टेबलो पे और कुर्सीयो पर बैठे हुए हैं।

और सामने ही दीवारों पर कुछ वॉलपेपर लगाया गया हैं।

उसी के साथ बहोत सारे फूलों के गल--

बाहर एक बंदा खड़ा है। उसी के साथ एक एक्टिवा पर लोक खड़े हैं।

और कुछ गमले रखे हैं जोकि बहोत ही बढ़िया लग रहे है।

अ एक कुड़सी भी रखी गई हैं।

हाउ देट ओह बेड के साथ एक टेबल पड़ा है।

इसी के साथ एक बहोत ज्यादा डब्बे पड़े हुए है वाइनो के डब्बे पड़े हैं।

और लोग वहां पे खड़े के तस्वीर खिंचवा रहे--

और सामने एक खिड़की है जिसे रोशनी अंदर आ रही है।

और उसी के साथ बड़ी डेकोरेशन की गई है।

किराना स्टोर के बाहर कोका कोला का बोर्ड लगा हुआ है।

अह दीवार की तरफ लगे हुए हैं सामने खिड़कियां लगी हुई हैं।

ये एक बहुत ही बड़े वॉल की तस्वीर है जो की एक कैफे की तरह लग रहा है सामने ही एक --

और पार्क के अंदर बैठे हुए हैं कुछ लोग यहां पर पार्क के बाहर बैठे हुए हैं।